यहाँ एक कार खड़ी हुई है रेड कलर की और तीन कांच की खिड़की टाइप दिख रहा है यहाँ पे।

दूर में कुछ पहाड़ी टाइप नजर आ रही है यहा पे कुछ पेड़ लगे हुए है।

यहा एक बिल्डिग दिख रही है जो कि रेड कलर की पुती हुई है निचे घास दिख रही है जो कि ग्रीन कलर की है।

एक आद बलब जल रहा है और जो की काला दिख रहा है बोर्ड भी लगा हुआ है।

जल..ती हुई मूर्ति लगी हुई हैऔर ग्रिल लगी हुई है सिटी पे ब्लू कलर --

दूर मे भी शायद खड़ी हुई है और कुछ खं-अ -म -बे दिख रहे है जिसमें शायद फिसल पट्टी लगी हुई है।

व्हाइट कलर का एक झंडा है एक येलो कलर का झंडा है यहा डबल स्टोर हैऔर साइड में कुछ और भी एक झंडा दिख रहा और ट्रेक्टर का कलर --